आसमान नीला कलर से दिखाई दे रहा है और बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक बहुत बड़ा फोर लाइन रोड है रोड में एक गाड़ी खड़ा है।

और बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।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

जूता दिखाई दे रहा है जो करिया रंग का है।